यहाँ पर एक बहुत बड़े प्लॉट मे एक मानसशासकीय शौचालय बनाया गया है यह एक सार्वजनिक शौचालय है यहाँ पर सभी व्यक्तियों के लिय--

यहाँ पर छोटे-छोटे टेंट लगाए गए है जिसके माध्यम से व्यक्ति नहाकर यहाँ आकार चेयरो पर बैठ कर इस स्वच्छ वातावरण का आनंद पुरी तरह से उठाते है।

यह एक बहुत सुंदर घरके सामने खडी हुई है इस गाडीको किसीने बुक किया है और बहुत सुंदर --

यह एक स्टायलिस्ट साडी शोरूम है। यह पर आपको साड़िया बहुतही मुलायम कटन की बनी हुई बनारसी--

डस्ट बना रहे है यहाँ पर स्वछ वायु चल रही है जो की इसे और आकर्षक बना रही है यहा पर बोत अच्छे पेड़ पोदे भी लगे है।

वातावरण है यहा आप शान्ति पूर्वक तरीके से रह सखते है यहा पर आपको खेलने के लिए एक बड़ा ग्राउन्ड भी दिया गया --

ये माता रानी मां भवानी का मंदिर है यहाँ पर माता रानी मां की स्मृति प्रतीत हो रही है यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए लोग आते हैं।